इस तस्वीर में हमको एक केक दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमको कुछ कार दिखाई दे रही है।

घर के ऊपर सौर ऊर्जा प्लेट लगी हुई है।

पीछे की ओर कुछ बड़े पेड़ खड़े हुए हैं और एक लाइट भी लगी--

यह एक ऑफिस है इस ऑफिस के अंदर एक पंखा लगा हुआ है।

बोर्ड पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र लिखा हुआ है।

प्लेट के ऊपर बहुत सारी लीची रखी हुई है।

जिनके पास एक लोहे की ग्रिल भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में हमको एक पानी की झील दिखाई दे रही है।

और एक कूलर भी रखा हुआ है।